कहीं कहीं पर भी पानी भरा हुआ है और बन रहा है पानी इकट्ठा करने के लिए |

पैलेस के बाहर डाली हुई है जो बहुत ही अच्छी जगमगा रही है।

हमें आईसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है| हम आईसक्रीम गर्मीयों के दिनों में बहुत ज्यादा खाते है ।

एक रैक है जहां एक गैरेज में रखा हुआ है। ट्रक खराब हो गया है इसलिए उसको सुधारा जा रहा है ट्रक के आस-पास बहुत सा सामान रखा हुआ है। यह मकैनिक --

ट्रक को सुधर रहा है और ट्रक को सही करने बाद ट्रक यहां से चला जायेगा।